जैसे हार्पिक का बोतल काला हिट --

मिट्टी के रास्ते दिखाई दे रहे है।

रास्तों के बगल में बहोत सारे घास है और छोटे-छोटे पौधे जमे हुए है।

और कुछ बड़े पत्थर है और कुछ छोटे पत्थर है।

उसका बोर्डर मैरून कलर में है।

और बच्चे के बगल में दो तल्ला मकान है।

उसके सामने तीन- चार मग रखे हुई हैं।